ये पास में कुर्सी रखी हुई है । खिड़की में शीशे लगे हुए हैं बाहरो का बाहर का कितना अच्छा नजारा है कितनी अच्छी कितना सुंदर नज़ारा है और यहाँ पर बैठने की कुर्सी है चलने की कुर्सी है साइकिलिंग भी है वाह !

वाह ये पोस्टर ये इनसे बॉडी बनती है और अपनी हेल्थ अच्छी होती है और अपना स्वास्थ्य अच्छा होता है।

मटियाली कलर की कितने सुंदर कितनी अच्छी कितनी प्यारी कितनी बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं।